जिस के ऊपर बच्चों की गुलाबी रंग और हरे रंग की रेल गाड़ी दिख रही है।

यह तस्वीर किराने के सामान के दुकान की है जिसमें लकड़ी के बड़ी-बड़ी अलमारियां बनी हैं।

गाड़ी का ढक्कन खुला होने कारण अंदर का पूरा इंजन दिख रहा है।

इसके बगल में काले रंग का शर्ट पहने सफेद पेंट व्यक्ति खड़ा हुआ है।

वह मोबाइल को अपने चेहरे के एकदम नजदीक रखे हुई है।

पीछे लाल कलर की रोशनी और सफेद रंग का एक सूट टंगा हुआ है।

तस्वीर में सीमेंट की एक बहोत लंबी दीवार दिख रही है।

इस तस्वीर में बोहोत सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं।

जो खुला हुआ है। जिसमें कांच के पल्ले लगे हैं।

साथ ही सफेद रंग की शर्ट वाले लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए है।

साथ ही एक खंबा जैसा कुछ दिख रहा है।

जिसमें कुछ महिलाये कुछ पुरुष दिख रहे हैं।

यह बैंक ऑफ बड़ौदा की तस्वीर दिख रही है।

तस्वीर में विशाखा डेली पार्लर लिखा हुआ दीवाल पर दिख रहा--

यह तस्वीर इंडिगो कंपनी के एक प्लेन की है।

कुछ व्यक्ति उसके ऊपर खड़े हैं जिसमे से एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग का टी-शर्ट --

बस के पीछे साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर का दरवाजा खुला है।

तस्वीर में दो व्यक्ति दिख रहे हैं जिन्होंने सफेद रंग का शर्ट पहना है ब्लैक कलर का पैंट पहना है।

और रेड कलर के बैकग्राउंड में ए.टी.एम. सफेद कलर से लिखा हुआ है।